घर जैसा बड़ा सा है और बाहर है जो कि बाइक्स है साइकिल है।

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं की ये अ बड़ा सा ये घर हैंये दूकान जैसा हमें दिख रहा हैं रोड है इधर।